और यहाँ पर छोटे से कलरफूल गमले भी रखे गए हैं जो हरे पिले लाल और गुलाबी कलर के गमले हैं और उसमे छोटे से पौधे भी लगे गए हैं बहुत सारी बाइक रखी हुई दिख रही हैं और बहुत अच्छे से लाइटिंग किये गए हैं।

चारो तरफ हमें पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे है जो बहुत ही प्यारे लग रहे है घर के बाहर एक गाडी खड़ी हुई दिख रही है यहाँ पे एक सीढ़ी भी लगी गई है और खिड़की बने हुए है छोटे-छोटे हरे-हरे घास ऊगे हुए है।

अ बैट के ऊपर बैठा हुआ दिख रहा है पीछे बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई हैं और जो जिसका कलर सफेद किया गया है और धूप का धूप निकली है जमीन पे हरे कलर की घास उगी हुई है और बहुत सारे पड़े पौधे नजर आ रहे हैं काफी लोगों की भीड़ है यहाँ पर।

पीछे हमें बहोत सारे आ पहाड़ जैसे कुछ नज़र आ रहे है जो बहोत ही अच्छे लग रहे है और ये बहोत ही अच्छा नज़ारा है ये पानी बहता हुआ दिख रहा है।

उसके हाथ में पाइप है वह पौधों को पानी देता हुआ दिख रहा है पौधे बहुत ही प्यारे होते हैं जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं इनको--

और यहाँ पे कुछ बाम्बू के टुकड़े नीचे ज़मीन पर रखे गये हैं और बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है और नीचे जमीन पे बालू इकट्ठा हुए हैं।

एक बहुत ही बड़ा स्टेज बना हुआ नज़र आ रहा है स्टेज पे-- अब--अ-- स्टेज पे कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे हैं सफ़ेद कलर की कुर्सी रखी हुईं है और यहाँ यहाँ पे बहुत सारे फूलों से डेकोरेशन किया गया है और लाल और सफेद कलर के कर्टन का यूज़ किया गया है।